जिसमे वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ हैं वाइट कलर के सामने एक मंदिर हैं मंदिर में वाइट कलर का के ऊपर दो झंडे लगे हुए हैं पीले कलर का उसके पीछे झाड़ लगे हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जमीन है जमीन के उपर मिट्टी पड़ी है लाल कलर की और उसके ऊपर दो जानवर है बड़े से जानवर है उसके ऊपर चेन नीला कलर का गेट बना हुआ है। गेट के आगे जाली बनी है जाली के पीछे एक घर बना हुवा है। घर --

ये दिख रहा है ये कोई स्टेशन या कुछ बड़ा सा हॉल है हॉल के अंदर एक व्हाइट और पीले कलर की टाइल्स लगी है। टाइल्स के पास मे एक बैठ ने के लिए एक स्पोट बना हुवा है। स्पोट के पास मे घास लगी हुई है। घास के ऊपर एक